इस तस्वीर में जो सामने की तरफ पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ महिलाएं और व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ नीम के अंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर को मुझे सामने की तरफ एक कूलर दिखाई दे रहा है और कुछ फ्रिज जैसे दिखाई दे रहा है एक --

इस तस्वीर में मुझे एक सामने की तरफ दुकान दिखाई दे रही है।

इस तसवीर में मुझे सामने की तरफ कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और महिलाएं दिखाई दे रही है कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक --

और कुछ पोल दिखाई दे रहे हैं जिसपे तार लगे हैं पोस्टर लगे हैं एक ए_सी भी रूम के पास दिखाई दे रही है।

और इसके पास कुछ कांटे भी रखे हुए हैं और इस तरह के कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं और सब्जियां दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ एक बैंक दिखाई दे रहा है।

ये कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही एक डमी दिखाई दे रहा है जिसको कुछ साड़ियां पहनाई हुई है।

बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति कंप्यूटर चलाता हुआ दिखाई दे रहा है पास में कुछ लैपटॉप भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक महिला गार्डन में पानी देती हुई दिखाई दे रही है जिसके हाथ में एक पाइप भी है।